और ये कपड़े के शॉप की कपड़े के शॉप का मार्केट है जिसमें की लाइटें लगी हुई है डेकोरेशन है फूल-माले का।

एक शादी का डेकोरेशन है जहाँ पे की ऊपर ब्राउन कलर का और गोल्डन कलर का डेकोरेशन है ऊपर उसमें लाइटिंग लगी हुई है|

अ ये एक बुक की शॉप है एक पुरानी शॉप दिख रही है बुक की जहां पर उसका नाम लिखा हुआ है और बाइक खड़ी हुई है बाहर।

और अ उ नीचे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है और अ चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक बस स्टैंड का फोटो है जहाँ पर की कुछ बस खड़ी हुई है और बस का नाम लिखा हुआ है बस का नीचे एक रोड है जोकि गीला है।

अ यहा पे अ बोहोत सारे हिरण है। अ --

हेयर कटिंग के लिए और ब्यूटी स्पा के लिए और अ नीचे केबिन में एक पोस्टर लगा हुआ है और साइड में ग्रे रेलिंग लगी हुई लोहें की।